यह एक कोई रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप का काउंटर लग रहा है।

बाउंड्री वॉल के ऊपर तार लगायी गई है सुरक्षा के लिए।

यहां पे सामने एक दो काउंटर हैं काउंटर वन काउंटर टू उसके नीचे एक चेयर रखी हुई है और नीचे रेड और वाइट कलर में कलर किया गया है।

और ऊपर व्हाइट और ऑरेंज रंग में गुब्बारे हैं तो कुछ सीटें और रखी हुई हैं यहां पे एक ऑफिस रूम है मेन ।

यहां पे मॉनिटर स्क्रीन रखी हुई है। पीछे कुछ पोस्टर लगे हुए हैं। यहां पे एक ब्रीटके सूटकेस और कुछ और डब्बा रखा हुआ है। ऊपर पंखा लगा हुआ है।

यहां सामने कुछ बोतले रखी हुई हैं नीचे कुछ निचे डस्टबिन है जिसमें कुल्हड़ पड़े हैं ऊपर और कुल्हड़ रखे हुए हैं।

वहां पे पीछे एक गोल्डन और रेड कलर की लाइटा पे कुछ बना हुआ है।

यहां लाइटनिंग हो रही है और ये रात का सीन है साइड में मेट्रो की पट्टी जा रहे हैं।

सामने एक लिफ्ट है उसके पड़ोस में एक बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पे दो या तीन लोग हैं पीछे कुछ गाड़ियां हैं बीच में डिवाइडर है।

बोहोत सारे लोग बैठे हुए हैं। यहां पे कुछ टेबल और कुर्सी रखी हुई। कुर्सी ब्लैक कलर में है। टेबल ब्राउन कलर में है।

पिलर भी लगे हैं जिनपे डिजाइन बनी है ब्राउन कलर में।

पीछे मिल मिल दिख रहा है दो तीन आदमी चल के हुए चलते हुए नजर आ रहे हैं पीछे एक बिल्डिंग है।

पीछे कई लोग वेटर बैठे हुए हैं यहां पे दो खंभे जा रहे हैं।

उसके थीम रेड कलर में नीचे चॉकोल में डिजाइन बनी है।

रेड कलर की चेयर है और ब्राउन कलर की कुर्सी है पीछे।

अब पीछे एक झाड़ी आ रही पेड़ की पीछे एक छोटा पौधा लगा हुआ है उसी के ऊपर लाइटें लगी हुई हैं डिम कलर की।

पोस्ट ऑफिस का सीन है जो पूरा भगवा रंग में रंगा हुआ है यहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ है जिसके नीचे पाइप सीवर सीवर पाइप आ रहा है।

पिज़्ज़ा बर्गर और उम्म पिज्जा बर्गर के साथ कोल्ड कॉफी मिलती है।

बड़े बड़े पैर पेड़ पौधे लगे है ऊपर टीन लगी हुई है जहां पे छाये आती है।

ये एक स्टेशनरी की शॉप है जिसका नाम रॉयल बुक डिपोट है।

कुछ अलमीरा शेल्फ में रखी हैं।

और हाँ कोने कॉर्नर में एक पेमेंट क्यू_आर कोड दिख रहा है और यहां --

यहां पे एक सीढ़ी लगी हुई है और एक यहां पे एक लोहे का गेट लगा हुआ है बड़ा सा।

यहां पे कुछ बकरियां बैठी हुई हैं और साइड में कुछ डाला टाइप का रखा हुआ है।

यहां पर जिस जो ये बिल्डिंग बनी है ये वाइट कलर में और रेड कलर थोड़ा रंगा हुआ है।

वायरें जा रही हैं यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है।

बाउंड्री के कलर लाइट ग्रीन है और टेबल व्हाइट कलर की है यहां पे कई लोग पढ़ाई कर रहे है।

एट वन सिक्स फाइव और अंदर एक भगवान की फोटो लगी हुई है।

जो हाथ बंधे खड़ा हुआ है पीछे कुछ खेत खलिहान है पीछे और पेड़ पौधे लगे है। हरियाली है। घास है और नीचे कच्ची जमीन है।

बाउंड्री पे मा माचिस और दिया और कुछ फूल पत्ते रखे हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट का सीन इमेज है जिसका नाम दुर्गा मां रेस्टोरेंट है।

थोड़ा बारश बारिश वाला मौसम हो रहा है बदली वाला।

यहाँ पे एक कोच खड़ा हुआ है उधर एक और आदमी खड़ा हुआ है।

आमने कोहली ब्रदर कुछ लिखा हुआ है और उसके पड़ोस में एक बड़ा सा होटल है जिसका नाम है कपूर्स होटल ।

क्लॉथ शोरूम है जहां पर सामने गिलास के पीछे कुछ कपड़े रखे हुए दो शेरवानी है और एक कोर्ट एक कोट कोटी रखी हुई।

टाइप का रंग है उसका गेट रेड कलर का है पीछे कुछ पेड़ पौधे लगे हैं।

बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और यहां कुछ भगवान की मूर्तियां टंगी हैं गणेश भगवान की मूर्ति है।

यहां पे साइड में एक काउंटर है जहां पे खाना मिल रहा है और यहां पर कई टेबलें लगी है।

और साइड में कंस्ट्रक्शन थोड़ा चल रहा है यहां पे दो ए_सी लगी हुई है नीचे कुछ बिल बोर्ड लगे हुए है।

ग्रे कलर की लाइटनिंग येलो येलो और ऑरेंज लाइट है ऊपर कुछ और भी लगा है नीचे दरी बिछी हुई है और एक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

बाहर की रोड का सीन है जहां पर दो ऑटो खड़े हुए का एक लड़का चलते हुए जा रहा है।

पीछे एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है। थोड़ा ब बादल वाला मौसम है।

ये कुछ सब्जी और ठेल सब फलों की दुकान लगी हैं।

यहां पर एक विंडो है और बाहर पेड़ पौधे काफी सारे लगे हैं।

फिर व्हाइट कलर में व्हाइट और पिंक और येलो कलर चार्ट लगा हुआ है छोटा सा।